इस इमेज मे हमे सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा है जेवोद्दीन जवेरी पॉलिटेक्निक मतलब ये पॉलिटेक्निक का कॉलेज है।

इस इमेज मे हमे घर का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है दो आदमी है जो इस घर का काम कर रहे है एक सीडी लगी हुई दिखाई दे रही ह।

एक सीडी है जिसपे रेड कलर की कार्पेट बिछी हुई है उपर पीछे में एक आदमी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है।